तस्वीर में हमें एक मेडिकल शॉप दखाई--

यह जिसके सफेद कलर की कपड़े पहनी हुई है।

बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहें--

एक हॉस्पिटल की दिखाई दे रही है।

के सामने बाइक भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

हमें थंबी गाड़ कारा तारे लगायी हुई नजर आ रहीं हैं।

पहाड़ दखाई दे रही है ओ--

इस तस्वीर में हमें एक मंदिर दिखाई--

अ दीवार पर कुछ तस्वीरें लगी हुई दिखाई दे रही है।